यहां डी_जे लगा हुआ है और अ काफी--

यह चेयर पे एक लड़की बैठी हुई है।

गोल करके और उनके उनके बाजू में काफी सारे पेड़ वगैरह हैं और कु काफी बच्चे बैठे भी हैं और काफी--